औरत देख आदमी उसको देख रहे हैं सभी ब्रिज के उपर खड़े होकर --

और पीछे एक बोर्ड लगा है उसमे ब्लैक कलर का प्लग लगा हुआ दिख रहा है।

ये कुछ ठेले लगे हुवे है जो फल फ्रूट बेहेच रहे है।

यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर बहोत सुंदर से फूलों से --

टेबल पर लगी हुईं हैं और सारे में लाइटें लगी हुईं हैं।

यहाँ पर एक आदमी पेट्रोल भर रहा है और कुछ जीप खड़ी हुई है।

पेड़ पत्तिया लगी हुई है और--

दे रहा है और कुछ मशीने रखी है।

खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके सामने एक गाड़ी भी रखी हुई दिखाई दे रही है।